इसके नीचे एक ट्रे रखी हुई है इसके पास खाली ग्लाससेस भी रखे हुई उलटे और पीछे एक फ्रिज लगी हुई है एक ओवन है जिसके पास शीशा लगा हुआ है ।

लकड़ी की ट्रे रखी हुई है जिसके अंदर मछलियाँ है जो काली सफ़ेद स्लेटी अ लाल है जिसके --

और खिड़किया शीशे की है जो की बंद है यहाँ की ये छत्त दिख रही है वो स्लेटी रंग की है ।

सामने एक अ तालाब जो है दिख रहा है जिसका पानी हरा और नीला चमक रहा है इसके पास में अ सूखा पड़ा हुआ हैं |